यहां पर मुझे एक बहोत बड़ा डैम दिखाई दे रहा है।

इसमें से पानी बहुत तेज प्रभाव में बह रहा है।

जेंट्स ने व्हाइट एंड ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं और लेडिस ने येलो कलर के।

और उन दो पेड़ों को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा है उसने।

और आंगन में एक एक गमले में तुलसी का पौधा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसने अ माली की ड्रेस पहन रखी है।

और यहां पर कुछ लाल डब्बे कुछ नीले डब्बे और कुछ पीला काला डब्बा दिख रहा है।

और यहां पर मुझे नीले कलर का शेड भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ फर्श पे नीचे खड़ी हुई है कुछ कालीन पर खड़ी हुई है।

कॉलेज की ये दीवारें दिखाई दे रही है जो की पीले रंग से पोती हुई है।

यहां पर सरिया सीमेंट का समान बिकता है।

एक स्कूटी पर चलते हुए दो युवक भी दिख रहे हैं।

और ब्रिज के नीचे एक बस एक टैंकर दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक औरत लाल कलर की साड़ी पहने हुए है बाकी अह बाकी लोग सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

एक बिल्डिंग व्हाइट कलर के रंग से पूती हुई है और मरून और यलो कलर के रंग से पूती हुई है।

यहां पर मुझे एक जाली लोहे की जाली नजर आ रही है।

और यहां पर मुझे धूप दिख रही है कुछ छाया भी दिख रही है।

जिसमें जो कि देव चाऊमीन एंड मोमोज सेंटर के नाम से है।

यहां कुछ लोग उस पार्क में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

चबूतरे के ऊपर चार पांच बंदर बैठे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर कुछ लोग मछलियां खरीद रहे है कुछ यहां पर लेडीज भी हैं और कुछ जेंट्स भी हैं।

यहां पर अ एक लड़का पीले कलर की टी-शर्ट पहने हैं एक ने एक नीले कलर की टी-शर्ट पहने है।